इस इमेज में किसी दुकान के अंदर का दृश्य नज़र आ रहा है यहाँ पर दुकान के अंदर बहुत सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पौधों के ऊपर फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस स्टील की प्लेट में लीचियां रखी हुई दिखायी दे रही है यहाँ पर और भी चीजें नज़र आ रही है।

यहाँ पर काफी मिर्चया बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर पास मे एक टोकरी में आलू पड़े हुए हैं यहाँ पर किसी बंदे के हाथ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कुछ पौधे उगे हुए नजर आ रहे है यहाँ पर कुछ और भी चीजे दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत किताबें दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत किताबें रखी हुई है तभी किताबें यहाँ पर सजा कर रखी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर कई तरह की किताबे है।